पर हमें से जिम दिखाई दे रहा है।

और वहां शोरूम बाटा का नजर--

और ऊपर एक झंडा भी लगा हुआ है और पानी की टंकी भी दिख रही है।

और मा दरवाजे के बाहर कार्यास्त धर्मशाला लिखा हुआ है।

दो चेयर भी दिखाई दे रही है।

लकड़ी काट रहा दिखाई दे रहा है।